ये कुछ यूनिर बगैरा पड़ी है और सामने एक सोफे पड़े हुए है और ये देख कर बहुत अच्‍छा लग रहा है ।

नाम लिखा हुआ है और सामने लौटरी का पोस्टर लगा हुआ है और सामने --

एक अ अ अ ब फूल का गमला पड़ा हुआ है और सामने एक सरक और एक आदमी खड़ा हुआ है ये देख कर बहुत अच्छा लग रहा है।

उनके पीछे एक कुर्सी पड़ी है जो ब्‍लैक कलर की है और उसके पीछे लाल कलर का पर्दा लगा--

मुझे जहां पे एक ब्रेकरी नजर आ रही है और इस ब्रेकरी में एक आदमी खड़ा है ऐं--

मुझे यहाँ पर एक शो नज़र आ रहा है सामने एक आदमी खड़ा है जिसने ब्लू कलर की शर्ट ब्लैक कलर की पैन्ट पहनी हुई है और इसके पीछे--

मुझे यहाँ पर एक आदमी खड़ा है जो इसने व्हाइट कलर की --

बहुत जादा कुर्सियां पड़ी हुई है और ये कुर्सियों का रंग ब्‍लैक कलर का है और ये है अ--

ये ऑटो रक्‍शा खड़ा है और सामने एक बिल्डिंग नजर आ रही है और यह देखकर बहुत अच्‍छा लग रहा है बहुत खूबसूरत लग रहा है ।

उसके नीचे कोई चीपते पड़े है एक अ अ ये येलो कलर एक ब्लू कलर का है ओर यहाँ पर ऊपर --

अह मतरब अ अ कुछ चीज़े शाशी वगैरा टाँगे हुए है और कुछ खाने पीने वाली चीज़े पड़ी हुई है और सामने एक लड़का खड़ा है जो --

मुझे जहां पर एक दफ्तर नजर आ रहा है और सामने कुछ आदमी खड़े है और एक ओ सीसे का दा काउंटर बना हुआ है और उसके--

एक दो डेकस पड़े है उसके ऊपर एक लड़का और एक औरत बैठे है और ये सामने एक और आदमी खड़े है और सामने--

शा बनी हुई है और ये बहुत खूबसूरत लग रही है और ये देखकर बहुत खूबसूरत लग रही है।